मजबूत है यह ब्रिज को बनाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ और इसके आसपास हरे-भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह नदी में कई प्रकार के मछलियां भी रहते हैं और इसे लोग यह मछली ये नदी मे मछली मार कर बेच-बेचकर अपना गुजारा भी करते है।

यह एक मछली मंडी है यह मछली मंडी काफी बड़ा और सुंदर है यह मछली मंडी में कई प्रकार के मछलियाँ भी मिलते हैं।